यहाँ पर एक हेलिकॉप्टर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर रोड पर कुछ व्हाइट कलर की रंगीत बनी हुई दिखाई दे रही है।

रूम दिखाई दे रहा है रूम मे एक काउंटर रखा हुआ है जहा पर अंदर एकआदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है गेट खुली हुई दिखाई दे रही है एने लगे हुए ये दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक लेडीज हात मे कुछ टांगे हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे है।

यहा पार शटर बंद दिखाई दे रही है यहा पर सिडिया दिखाई दे रही है यहा पर ऊपर की खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही है खिड़की खुली हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर काच लगे हुए दिखाई दे रहे है जिन मे वो लड़का दिखाई दे रहा है।

एक क्यारी बनी हुए है जिसमे कुछ फूल लेगे हुए दिखाई दे रहे है अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे काच लगी हुई दिखाई दे रहा है उसके गेट पे कुछ आदमी आपस मे बात चित करते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है होड हॉल मे के बेड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दो चेअर राखी हुई दिखाई दे रही है इनपे तकिये लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे बहुत सारी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक पोस्टर पीछे लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जल रही ए लाइटिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ ट्रक ट्रॅक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक आ ऊपर रेल का पाता दिखाई दे रहा--

यहाँ पर एक फेफड़ा अंदर फ्रिज मे अंदर प्याक दिखाई दे रहा है उसके हात दिखाई दे रहे है उसका मू दिखाई दे रहा है उसके अंदर जल रही लाइट दिखाई दे रही है और वहाँ पर एक पीछे नोटिस लगा हुआ दिखाई दे रहा।

यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रहा है मस्जिद मे एक मूसल मान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसके सिर पर एक टोपी लगी हुई है पेड़ पीछे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

दूर जाकर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है खेत में बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग मे कुछ लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बल्ब लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बिल्डिंग मे लगी खिड्किया गेट दिखाई--